इस चित्र में हमें एक आइसक्रीम की दुकान दिख रही है।

कार का रंग सफेद है।

जिसका निर्माण चल रहा है।

रेलिंग पर हरी नेट डली है।

इस चित्र मैं एक पार्क दिख रहा हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

लाल पीले और काले फुग्गे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक होटल दिख रहा है दो गाड़ियां खड़ी हैं।

बस का रंग लाल है।

इस चित्र में हमें एक मस्जिद दिख रही है।

इस चित्र में हमें दो डॉक्टर दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा हैं।

काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

एक लकड़ी का टेबिल दिख रहा है।

आसमान में बादल दिख रहे है।

पेड़ों में हमें लाल और हरा पत्ती दिख रही है।

काफी सारी किताबें जमी हुई है।

एक पेड़ लगा हुआ है।